ये एक मैदान है जहाँ लोग वाक कर रहे है। यहाँ काफी सारी हरियाली है और बोहोत ही सुन्दर सा सूरज दिखाई दे रहा हैं।